यहाँ पे घर है बिल्डिंग है बाइक है कार भी है शायद जा रहा है लुक पूरा नीचे जमीन हैजैसे टाइल्स लगे हुए हैं।

यहाँ पर लड़के है जहाज है नीचे टाइल्स बिछा है और कुत्ता है रूम है हरी हरी घास है बहुत सुन्दर दिख रहा है।

सीढ़ी दिख रहे है ऑरेंज कलर का ग्रीन भी उसमे है पूरा सेफ्टी के लिए भी र लगाया गया है उधर बिल्डिंग दिख रहे है।

ऊपर पूरा बादल दिख रहा है अ उधर पूरा ज़मीन दिख रहा है बहोत अछ--

यहाँ पे कार है बहोत सारी कार पार्क वाला है।

पूरा मस्त अच्छा है नीचे टाइल्स लगा हुआ है ऊपर लाइट लगे हुए है।

पूरा फुल मलाऐ सजा हुआ है बहोत सारे पुलिस भी है आदमी भी है और बलराम पुर जिले में आपका अधिक अभिनंदन करते है।

हरा बरा पड़े पौधे है अच्छे दिख रहे हैं और जमीन है।

यहाँ बहोत सारे तिरंगा झंडे लगे हुए है औ --

बहुत आदमी है लोहा है और ये कुछ लगे हुए है ग्रीन कलर के भी लगे है ब्लू भी है ऑरेंज भी है अच्छे दिख--

बहोत सारे आदमी है एक साई बहो और साइकिले है कार है बहोत सारे पेड़-पौधे है पूरा बहोत सारे पेड़ है।